इस फोटो में मुझे बहोत सारे लोहे के छड़ दिखाई दे रहे हैं।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

इस फोटो में मुझे कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं।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

फोटो में मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे घर दिखाई दे रहें हैं।

इस फोटो में मुझे बांस का डंडा दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे सजी हुई बस दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे गार्ड दिखाई--

इस फोटो में मुझे कांच का दरवाजा दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे बिजली की तारे दिखाई दे रही है।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

इस फोटो मुझे लोक सेवा केंद्र दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे बिजली की तार दिखाई--

इस फोटो में मुझे पान की दुकान दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे गुटका पाउच दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो मे मुझे पानी का पाइप दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे एक बाल्टी दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे पेड़ दिखाई--